अध्ययन कराया जाता है यहाँ बहोत ही बड़ा क्षेत्र में बना हुआ एक विशाल महाविद्यालय है।

नॉर्मल दरवाजा लगा है लोहे की--

यह फोटो रात के समय खिंचा गया है जिसके दीवार में पेंटर ने काफी अच्छी पेंटिंग की हुई है।

और पूरी तैयारी की जा रही है मैच खेलने के लिए --